कई पत्थर दिख रहे है हरे-हरे पेड़ दिख रहे है।

मिक्सचर मशीन रखी हुई दिख रही है।

बड़े-बड़े कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

नीचे घास पत्थर और पानी भी दिखाई दे रहा है।

जिस पे कलर फुल लाइटे लगीं हुई है।

कुछ दुकाने दिखाई दे रही है सेंटर दिख रहे है।

बड़ा सा एक गेट दिखाई दे रहा है जिस पे छठ एंव कार्तिक पूजा के अवसर पर लिखा हुआ दिख रहा है।

चित्र में खूब सारा पानी दिखाया जा रहा हैं।

कुछ पत्ते दिखाई दे रहे है कुछ लोग बैठ के पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है।

चित्र में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

बड़े-बड़े हंडे दिखाई दे जा रहे है पानी के बोतले दिख रही है।

चित्र में एक आदमी पी .पी .ई किट पेहने हुए दिख रहा है।

बोरिओ में रखा सामान रखा हुआ दिख रहा हैं।